सामने में प्यारा सा रूम दिखाई दे रहा है जिसमें एक बिस्तर है जिसमें ब्लैंकेट का कलर रेड है।

ऊपर एक ए_सी भी प्रतीत हो रहे हैं।

एक मछवारा है जो मछली बेच रहा है अलग अलग प्रकार की मछलियाॅं दिखाई दे रही है साईड में एक बाल्टी दिखाई दे रहा है।

वाओ सामने में कितना सुंदर टेस्टी --

पानी बॉटल्स है स्टिंग दिखाई दे रहे--

मेरे सामने एक आदमी है।

ब्लूटूथ लटका हुआ जो इसका कलर रेड है।

मेरे पास एक शॉप है रखा हुआ है